एक दु तीन चार और पांच बैट --

यहां पर एक छोटी सी बिल्डिंग का पिक्चर है यह पिक्चर में ग्राउंड फ्लोर पर--

पर्पल कलर की शर्ट पहनी है।

यहां पर साड़ी और चनिया चोली की बड़ीसी शॉप --